यहाँ पे कुछ रेलवे के रोड नजर आ रहे हैं जिसमे एक ट्रेन जा रही है जिसका इंजन पोपटी कलर का है। ऊपर से रेलवे का पुलिया बना हुआ है। ऊपर से वायर जा रही है।

टीन का छात्राव बना हुआ है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैरेज नज़र आ रहा है जहाँ पे एक फोर विल्हेर गाड़ी खड़ी है जिसे खोल के उसका काम किया जा रहा है।

एक पे एक प्रिंटिंग प्रेस दिखाई दे रही है जहाँ से कुछ कागज निकल रहे है और कुछ प्रिंट हो रहे है एक आदमी उस मशीन के पास खड़ा है जिसने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

यहाँ पे पाँच मंज़िला इमारत नज़र आ रही है वहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ लगायी हुई है उसमे काँच लगा हुआ है।

बीच मैं कतिया कल कलर दिया हुआ है और नीचे वाइट कलर है बाजू मैं ग्रे कलर है ऊपर एक पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ वायरस दिखाई दे रही हैं।